और एक पटरियां पे एक ट्रेन का मशीन लगा हुआ दिखाई दे रहा है और--

पत्थर दिखाई दे रहे बहोत सारी लाइट ट्यूब लाइट स्टार --